यहाँ पर ये एक स्कूल है और यहाँ पर एक यहाँ अंदर जाने के लिए रास्ता है और एक लड़का है जो जेब में हाथ डाल के बाहर आ रहा है।

और एक आदमी है जिसने जूती बहन जूते पहन रखे हैं।

पीछे की तरफ देख रही है उमान में कुछ खा रही है।

वहाँ पर भूस पड़ा हुआ है वो उसे खाने में लगी हुई है और ऊपर की तरफ टीन बिछी है और एक रोशनदान भी है।

और ये गेट पे लगे हुए हैं और इसमें दो दरवाजे हैं।

यहाँ पर एक ही दुकान में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दो-तीन दुकाने हैं --

यहाँ पे जॉनसंस ऑटो राइस डीलर है और एक बालाजी टाइल्स और मोबाइल्स टाइल्स और मार्बल्स की दुकान है और ऊपर की तरफ है --

यहां पर बहुत सारी दुकाने हैं और उनके ऊपर कलरफुल पल्ली जैसी बिछी हुई--

और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी मकान मतलब बना रखा दो मंजिला में--

और जिस पर जो है कोई ना कोई जानवर बैठा हुआ है।

रे बांस अ पेड़ अ पेड़ लगे हैं और बांस से ये इन्होंने चारों तरफ से घेर --

और यहाँ पर खिड़कियाँ हैं बहुत सारी इस केबिन में।

यहाँ पर बहुत सारे फाइबर के दरवाजे हैं और यहाँ हर तरीके डिजाइन्स हैं।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोस्टर है बैनर और ये लिखा है पटना और लिखा है इलेक्शन होगा यहीं से किसी आदमी की यहाँ पे --

ये बहोत बड़ी नदी है यहां पर और इस नदी के ऊपर बहुत बड़ा पुल बना हुआ है लाइन ट्रेन जाने का--

और यह आदमी यहाँ पे खरीद रहा है और दूसरा आदमी उसे रेट बता रहा है।

ये एक गोदाम है और यहां पर जो है बहोत बड़े बड़े कॉटन रखे हुए हैं।

पन्नी में पैक है कट्टों में और यहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं और यहाँ क्रेन से जो है इनको उठा के और इन्हें नापा जा रहा है।

और यहां पे जितने भी मजदूर है उन लोगों ने सिर पे अं हेलमेट सा लगा रखा है।

उस पर और सामने की तरफ एक लड़का जा रहा है साइकिल लेके।

और यहाँ पर एक टब है टब के अंदर छोटे-छोटे कंकड़ हैं --

कलरफुल वाले और यहाँ पेड़ भी है और इसके अंदर पानी है।

बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रखा है इन लोगों ने और ये लोग --

और यहाँ पर भी दो-चार आदमी हैं शायद ये कोई आश्रम के लोग हैं --

और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अन बाहर खड़े हैं गेट के और एक बाइक खड़ी हुई है और अम्म उसके पास भी एक आदमी खड़ा हुआ है।

और यहाँ पर एक दीवार सी है जिस पर दो चार पोस्टर छोटे-छोटे लगे हुए हैं।

सजे हुए हैं और गर्ज इन लोगों ने गजरा भी लगा रखा है बालों में --

ये यहां पर अ पार्टी का सीन है यहां पर जो है बहोत सुंदर डेकोरेशन हो रखी है।

और नीचे तरफ दुकानें लगी हुई है जिसमें और सामने की तरफ के केले के पेड़ भी है।

सिखाते हैं और यहाँ दो पोस्टर लगे हुए हैं और सामने की तरफ बहुत सारे --

इसकी सफाई हो रही है और उम्म इसको सही करा जा रहा--

यहाँ पे एक बाल्टी रखी है अंदर की तरफ कंप्रेसर है इंजन का पानी गै वो भरने का टायर में हवा भरने का --

यहाँ पर एक कंप्यूटर के पार्ट्स की दुकान है यहाँ पर और यहाँ पे कीबोर्ड है माउस रखा है और यहाँ स्पीकर रखे हैं।

और ब्लूटूथ रखा है बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर है कंप्यूटर से रिलेटेड --

और यहाँ पे एक टेंपू है और बहुत सारे लोग हैं जो --

और यहाँ पर बहुत सारी तादाद में ये सब चीजें हैं --